ये देखिए आप यहाँ पे बहोत सारे मछलियाँ मिलती है।

कई प्रकार की मछलिया यहाँ रहती हैं जो जिनको जो अच्छी लगे वो यहाँ से ले जा--

आ सुकून मिलता है जिससे हम लोग बहोत अच्छा लगता है। मंदिर जा --

यहाँ पे दो खाने बने है। दो खाने में लोग बैठ सकते हैं। बोहोत ही --

कार्यालय है। क्रीड़ा प्रसिद्ध का --